यह सड़क के किनारे है। यहाँ काफी चौड़ी सड़क भी है। यहाँ पर बहुत से आदमी खड़े है।

इस मंदिर के किनारे काफी बड़े-बड़े घर भी हैं।

यहाँ पर केले के भी पौधे है यहाँ पर तरह-तरह के पौधे लगाये गए हैं यहाँ पर हरे-हरे घास भी हैं ।